बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे है जंगल एरिया दिखाई दे रहा है सब मे हरा-भरा दिखाई दे रहा है हरियाली दिखाई दे रही है।

चित्र मे सामने ऊपर अमन मोबाईल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है टाटा स्काइ भी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है मोबाईल की शॉप दिखाई दे रही है गमला रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है एक पोस्ट ऑफिस के अदर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है कई सारे पेड़ पोधे भी दिखाई दे रहे है गमले दिखाई दे रहे है गमलो में पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है।